इन टेंटो को काफी सुंदर पर्दो से सजा रखा है लाल और सफ़ेद रंग से तथा ऊपर भी अच्छे हरे रंगो से सजा रखा है।

यह पर एक गलियारा है जो की भवन का है भवन की दीवार नजर आ रही है जो की गुलाबी कलर की है और खिड़कियाँ भी है।

मेरे नजरिये से आप सब देख सकते है की सामने की ओर एक बहोत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही हैं जो की गोल्डन कलर की है ।

यहाँ पर मेरे नजरिये से आप सब देख सकते है की एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जो की चर्च है चर्च का --

यह फोटो में एक शादी का समारोह चल रहा है ऊपर की ओर हम सब देख सकते है की सफ़ेद सफ़ेद गोल-गोल लाइटे और पंखे--

सड़क के बीचो-बीच एक टेम्पो दिखाई दे रहा है लाल कलर का जिस की ट्रॉली भूरे कलर की है।

उन के अगल बगल रैकर दिखाई दे रहे हैं बीच पीछे में रेकर दिखाई दे रहे है तथा शीशों के अंदर भी कपडे है ऊपर झूमर लगे है लाइटे दिखाई दे रही है बिच में एक पिलर सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है।

काले रंग के तथा दोनो बिल्डिंगो के आगे बहुत बड़ा - बड़ा मैदान है मैदान के बीचो बीच पेड़ दिखाई दे रहे है रोढिया नजर आ रही है तथा थोड़ी - थोड़ी घास है बीच में सड़क --

और उस पर जंजीर पर बना एक झूला है झूले पे एक बच्चा बैठा हुआ है झूले के पीछे एक बाउंड्री नजर आ रही है जिस पे की शीशे से जिस पे की लोहे बने हुए है।

उन लोगो के बीचो बीच सफ़ेद कलर की कार है जो की जोकि काफी सजी हुई है फूलो से और ऊपर की ओर आसमान दिखाई दे रही है काले रंग क लाइट का दिखाई दे--

यहाँ हम सब देख सकते है की चटान नजर आ रही है नीचे की साइड उसके बीचो बीच पानी दिखाई दे रहा है पानी का तालाब है।

नीचे की ओर एक लाल कलर का भवन दिखाई दे रहा है जिसकी बाउंड्री भी ये लोहै लगे हुए है उसके सामने खम्भे भी है।

बगल में उसके घने- घने पेड़ है तथा सामने उसके चौड़ी सड़क है मिट्टी कलर की आसमान से नीचे परकास की रौशनी पड़ रही है तेज --

तथा दो व्यक्ति दिखाई दे रही रहे है एक व्यक्ति बैग टांगा हुआ है तथा एक व्यक्ति लाल कलर की टी शर्ट और लोअर पहना है।

एक्चुअली यह जंगल है ऊपर की साइड आसमान दिखाई दे रहा है बादलों से ढका --

जिसपे कुछ सूंदर अक्षरो में लिखा बिया बिया हुआ है और माला चढ़ी हुई है लाल कलर की पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है बगल मे बॉउंड्री तथा कुछ लोग भी नज़र आ रहे है।